इस इमेज मे एक हॉस्पिटल का बोर्ड लगा हुआ है मैन गेट के अंदर जिस --

इस इमेज में तीन मंजिल एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

जिसके आगे चार खम्भे नजर आ रहे हैं।

इन इमेज में एक टावर दिखाई दे रहा है।

इमेज में एक शॉपिंग मॉल जैसा दिखाई दे रहा है जिसमे अलग अलग कुछ पैकेट टाइप के दिखाई दे रहे है जिसमे ऊपर---

इस इमेज में फर्नीचर से बना अलग-अलग काउंटर दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज मे लोहे की जाली के अंदर दो तोते दिखाई दे रहे है।

इस इमेज में एक तोता को देखता हुआ नजर आ रहा है फिर जाली के अंदर कुछ पेड़ भी लगे हुए है नीचे लोहे की ट्रे टाइप की बनी हुई रखी है।